बहुत सुन्दर लग रहा हैं टेंट लगा हुआ हैं माहौल चल रहा हैं बहुत सारे लोग हैं।

ये एक नदी है बहुत सारा पानी भरा हुआ है अब बहुत सारे पेड़ दिख रहे है और आसमान भी व्हाइट कलर का का दिख रहा है।

एक ब बड़ी सी नदी है एक बत्तक एक व्यक्ति बैठा हुआ बहुत सारा पानी भरा हुआ है।